क्या हुआ साडी है और भी है और सब सैंपल भी है और नेट वाला भी इसमें साड़ी है।

ए नाक्स सुपर्ब बस स्टैंड है और इसमें टेंपो भी लगता है और इसमें टोटो रिक्शा भी है। दोनों है बहुत ज्यादा संख्या में।

बहुत ज्यादा संख्या में गाड़ी है। ऐसे भाड़ा के लिए रिजर्व होता है और लोकल भी चलता है और दोनों से चलता है रिजर्व भी चलता है।

और ए टू जेड सामान इसमें मिलता है। खाने पीने की भी इसमें सामान मिलता है। ठीक है! मॉल देखिन बोहोत अच्छा दोनों साइड से सीढ़ी है।

देखने में बहुत ही अच्छा और ऊपर फैन भी लगा हुआ है और ऊपर एक ब्लू कलर का शर्ट लगा हुआ है।

सेल्फी लेते है नजारा देखने में बहोत ही अच्छा है बड़ा बड़ा आकार में है लॉन का --

ये नदी है और नदी के चारों साइड पर पेड़ पौधा है इसमें पूर्णिमा के पूर्णिमा की --

जाते हैं अब या तो सुबह का ठंडा स्नान करके पानी गर्म रहता है इस जगह का ठीक है थैंक यू धन्यवाद।

दूर-दूर से आदमी आते हैं पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए। ठीक है! बोहोत अच्छा देखने में है। थैंक यू ! धन्यवाद!

सीरी है और ऊपर जाते है बैंक पर आ बैंक से फिर ऊपर जाते हैं पार्किंग के लिए घूमने के लिए टहलने के लिए।

दोनों साइड से हरे-भरे पेड़-पौधे है और उसका नीचे बहुत बड़ा खाई है ।

अ कैप में लिखा हुआ है बॉय ठीक है देखने में अच्छा लगता है थैंक यू धन्यवाद।

ये है जो ये लग रहा है मौलवी साहब का बड़ा ही --